मजीले की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारे दरवाजे दिखाई दे रहे हैं जिसमें बहुत सारे खिड़कियाँ नजर आ रही हैं कांच दिखाई दे रहे हैं और

और बहोत सारे खंभे नज़र आ रहे है और लाइट नज़र आ रही है और बहोत सारे लोग इंतजार करते हुए दिख रहे है।

ग्राउन्ड नज़र आ रहा है उसका कलर कत्था दिख रहा है और यहाँ पे एक खाली जगह भी दिख रही है और यहाँ पे चार बच्चे दौड़ते हुए भी नज़र आ रहे है और यहाँ सफेद कलर की लाइन नज़र आ रही है।